printing a presentation पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम printing के लिए विभिन्न विकल्पों के बारे में सीखेंगे:
slides handouts notes और outline
यह tutorial ubuntu linux os वर्जन 1804 और libreoffice suite वर्जन 635 का उपयोग करके recorded किया गया है
printing विकल्प उपयोगी होता है:
जब हम बाद के संदर्भ के लिए अपने presentation की copies अपने दर्शकों को देना चाहते हैं
presentation sampleimpress odp खोलें जिसे हमने पहले सेव किया है
यह file इस tutorial पेज पर code files link में आपके लिए प्रदान की गई है कृपया डाउनलोड और एक्स्ट्रैक्ट करें
एक copy बनाएं और फिर अभ्यास के लिए इसका उपयोग करें
अब सीखते हैं कि विभिन्न फॉर्मेट में अपनी slides का printout कैसे लें
यहां standard toolbar में print icon है
slides को print करने के लिए प्रदर्शित shortcut की control plus p icon पर tooltip देखें print icon पर क्लिक करें
print dialog box खुलता है
अभी के लिए print dialog box बंद करें
मैं print dialog box खोलने के लिए अन्य पद्धति बताती हूं
menu bar में file menu पर click करें और फिर print विकल्प पर click करें
print dialog box में हम general और libreoffice impress नामक दो टैब देखते हैं
पहले libreoffice impress टैब में विकल्पों को देखते हैं
document section से शुरू करते हैं
default रूप से type field के ड्रापडाउन में slides विकल्प चयनित है
अन्य विकल्पों को देखने के लिए type field के ड्रापडाउन पर click करें
type field के विकल्प impress के लिए unique हैं
यह विकल्प हमें अन्य फार्मेट में slides को prints करने की अनुमति प्रदान करते हैं जैसेः
handouts notes और outline
बाईं ओर पर slides का print preview देखें
यहां previous और next page icons हैं
यह देखने के लिए कि वे कैसे print होंगी print preview window में सभी slides को scroll करके देखें
contents section में default रूप से hidden pages checkbox चयनित है
हम slide name और date and time checkboxes भी चुनेंगे
यह दिनांक और समय के साथ slide का name और यदि हो तो hidden pages भी print करेगा
color section में इस पर क्लिक करके grayscale radio button चुनें
size section में हम fit to printable page radio button चुनेंगे
आप libreoffice impress टैब में अन्य रंग और आकार के विकल्पों को बाद में स्वयं समझ सकते हैं
अब general टैब के विकल्पों को देखें
printer में हम अपने कंफिगर किए गए printer का name चुनेंगे
page layout section पर जाएं
page layout section में कई विकल्प उपलब्ध हैं
orientation field में हम landscape विकल्प चुनेंगे
pages per sheet field में हमारे pages default रूप से संख्या 1 है जिसका अर्थ है कि यह pages पर एक स्लाइड प्रिंट करेगा
order field के दाईं ओर पर हम संख्या 1 दर्शाते हुए rectangle box देखते हैं
यह pages per sheet field में विकल्प के अनुसार slide संख्या का प्रिव्यू है
मानिए कि हम printout के उसी पेज में एक से अधिक slide चाहते हैं
तो pages per sheet field में हम slides की संख्या चुन सकते हैं जिसे हमें प्रति pages print करना चाहते हैं
हम इस field में 2 चुनेंगे
अब हम rectangle box में slide संख्या 1 और 2 का प्रिव्यू देखते हैं
हम बाईं ओर पर print preview में दो slides प्रति पेज का प्रिव्यू भी देख सकते हैं
अब pages per sheet field में 4 चुनें और देखें क्या होता है
तुरंत हम rectangle box में slide 1 से 4 तक का प्रिव्यू देखते हैं
इसी तरह हम बाईं ओर पर print preview में चार slides प्रति पेज का प्रिव्यू देखते हैं
अब draw a border around each page के checkbox पर click करें
यह printing करते समय slide के चारों ओर black border बनाता है यह पेज को अधिक आकर्षक बनाता है
अंत में slides को print करने के लिए निचले दाएं कोने पर ok button पर click करें
यदि आपका printer सही कंफिगर है तो अब presentation printer होनी शुरू होनी चाहिए
अब सीखते हैं कि handouts format में slides को print कैसे करें
standard toolbar में print icon पर click करें
print dialog box में libreoffice impress टैब पर click करें
type field के ड्रापडाउन पर click करें और handouts विकल्प चुनें
slides per page field में default रूप से according to layout चयनित है
यह बाईं ओर पर print preview में 5 slides प्रदर्शित करता है
लेकिन slides per page से हम slides की कोई भी संख्या चुन सकते हैं जिसे हम handouts के रूप में print करना चाहते हैं मैं इसे 3 करूंगी
इस presentation के लिए अन्य विकल्पों को वैसे ही रहने दें
अंततः slides को print करने के लिए निचले दाएं कोने पर ok button पर click करें
यदि printer सही से कंफिगर है तो presentation अब printer होनी शुरू होनी चाहिए
tab पहली slide पर जाएं और notes टैब पर click करें
click to add notes पर click करें और this is a sample note type करें
फिर textbox के बाहर कहीं भी click करें
अपने notes print करें जिन्हें हमने अपनी slides के लिए टाइप किया है
पहले की तरह standard toolbar में print icon पर click करें
ध्यान दें कि libreoffice impress टैब tab print dialog box में सीधे खुलता है
type field के ड्रापडाउन में notes विकल्प चुनें
अब बाईं ओर पर slide का print preview देखें
print preview के निचले भाग पर यह वह note दर्शाता है जो हमने पहले टाइप किए हैं
वह सभी अन्य notes जो हमने टाइप किए हैं को देखने के लिए print preview window में सभी slides को scroll करके देखें
निचले दाएं कोने पर ok button पर click करें
यदि printer सही कंफिगर है तो अब printer printer करना शुरू करना चाहिए
अंततः presentation के दौरान त्वरित संदर्भ के लिए slides की outline को print करें
फिर से standard toolbar में print icon पर click करें
type field के ड्रापडाउन में outline विकल्प चुनें
अब बाईं ओर पर slide का print preview देखें
यह headings और subप्वाइंट के साथ हमारी slides का क्रम या outline दर्शाता है
निचले दाएं कोने पर ok button पर click करें
यदि printer सही कंफिगर है तो अब printer printing शुरू करना चाहिए
save icon पर क्लिक करके अपने presentation में किए गए बदलावों को सेव करें और फिर फाइल बंद करें
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने printing के लिए विभिन्न विकल्पों के बारे में सीखा: slides handouts notes और outline
नियतकार्य के रूप में practiceimpress odp फाइल खोलें
प्रति पेज 2 slides print करें
सभी slides को इसके date and time सहित black and white में print करें
handouts के रूप में केवल पहली चार slides print करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
हम spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपनी समयबद्ध queries को इस forum में post करें
spoken tutorial project mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
इस tutorial का योगदान मूलरूप से 2011 में desicrew solutions pvt ltd द्वारा दिया गया था यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूं धन्यवाद